स्टेशन है स्टेशन पर एक ट्रक खड़ा हुआ है।

ट्रक और कुछ लेबर हैं जहाँपर लोग पत्थर तोड़ रहे हैं कुछ--

एक लटका हुआ है।

बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं और बस के नीचे भी काफी सारे--

वहां पर बहोत सारा सामान रखा हुआ है कार गैलरी का का और दो वाटर कूलर एक बाल्टी एक स्टूल --

एक गेस्ट हाउस जहां पर एक खूब सुंदर सी डेकोरेशन हो रही है बैलून से डेकोरेशन हो रही है बैलून के फ्लोर बन रहे हैं।

एक बहुत बड़ा जा जानवरों का जाल बना हुआ है जिसमें खूब सारे जानवर बंद हैं।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के एक खिड़की है ।

एक येलो रंग की टॉप पेहने एक लड़की बैठी है ओ कुछ बटन बिजली के स्विच लग रहे है एक पानी --